मुझे इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहे है वहां में दो ठो फैन भी है और एक फ्लावर पॉट भी है।

कमरा में सुंदर से लाइट भी जल के है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है और वाइट कलर का भेड़ा भी दिखाई दे रहा है।

वॉल का कलर ऑरेंज में है और ऊपर का कलर जो वाइट में हैं।

जो यहां एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

वहां में तीन ठो फ्रेम हैं और उसके ऊपर लाइट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में चर्च दिखाई दे रहा है पूरा व्हाइट कलर में।

वहां में कपड़ा बहोत ज्यादा हैंगर में हैंग करके हैं।

घर का अंदर में इंसान लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और दो ठो हेलमेट भी है सामने में।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा हैं।

स्कूटी और बाइक लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक घर जैसा दिखाई दे रहा है दो फ्लोर का और उसका पूरा कलर वाइट में है।

इंसान लोग भी दिखाई दे रहे हैं दो ठो आंटी और दो अंकल दिखाई दे रहे हैं।

आगे जाके प्लेन सा एक जगह दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में।

साइड में बहुत ज्यादा पेड़ लोग भी दिखाई दे रहे--